यहाँ पे एक लम्बा सा रास्ता है रस्ते में टाइल्स लगी हुई है एक लम्बा सा पेड़ है और यहाँ ग्राउंड में एक हेलीकाप्टर है।

यहाँ पे एक सोफा है और बगल में एक चेयर भी है

पर एक खेत है खत में धन लगी हुई है